यख मैदान मा जी कई सारा लोग भी छन दिखेण लग्यां सामणीम एक टेंट कर भी छ लग्युं।

बिच फुणु एक खालू छा खाला मा जी जु छा यख गाड छ बगण लगीं यख फणा हरयां भरयां बिट्ठा छन हरयूं भरयूं घास छा यख फण हरयां भरयां डाला भी छन।

का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक दुकान कर छा दिखेण लगीं यख मा जी कई सारू सामान भी छा रख्युं।

यख मा जी आदु छ रख्युं यख मा जी दाल का पैकेट छन रख्यां यखम स्टूल छ रख्युं भितर फणा तराजु छ दिखेण लग्युं।

का अनुसार यख मा जी जू छा हम ते एक पीला रंग कु जालि कु जंगला कर छा दिखेण लग्युं ये जाली का जंगला मा जी एक आदमी चलन भी छ लग्युं।

ये जालि कु जंगला पीला रंग कु छा यख पिछाड़ी फणा हरयां भरयां डाला छन हरी भरी झाड़ी झपोड़ा छन।

का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक इमारत छ दिखेणी यख मा जी ये इमारत देखण मा जी कोई चर्च कर भी छ लगण लग्युं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक इमारत छ दिखेणी यख नीसाण मा जी एक दुकान छा यख भितर कई सारा चिप्स कुरकुरा भी छन दिखेण लग्यां।

यखम शैम्पू का पैकेट भी छन यख मा जी नीला ड्रम छन रख्यां बाल्टी भी छन यख फणी रखीं।